यहाँ पर बैठ कर अपने विचार विमर्श और आपसी बात चित करते --

यह चित्र जो हम देख रहे हैं।

जहां पर हमारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिलती हैं।

जहा पर हम उन चीज़ो का डेली उपयोगो के रूप में करते है।

घूमने से आनंद फिर हमलोग उठा --

ये चित्र जो हम देख रहे हैं। ये चित्र किसी पहाड़ी इलाके का है।

पहाड़ियों के बीच में छटा में खेल रहा है।